अगल बगल में पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

सजाया हुआ है गमला में पौधा लगा हुआ है।

गूफा है। गूफा में आसमानी कलर का कपड़ा पहनकर एक आदमी कुछ कर रहा है।

यह गिरजाघर के सामान दिखाई दे रहा है क्यों कि यहां दीवार पर पुरुष का सीन बना--

हुआ है इसके बाहर कुछ पब्लिक खड़े हैं और कुछ लोग मोमबत्ती जला रहे हैं।

भवन के किनारे एक लत्ती एक पेड़ है जो--

इसके नीचे दो गाड़ी लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में बुके की दुकान दिखाई दे रही है।

दूसरी तरफ पेशाब करने वाला बना हुआ है।